और एक पथछड़ बड़ा पेड़ है जिसके आसपास बहुत बड़े-बड़े मकाने हैं।

एक शोरूम है जो कि बहुत सारे कपड़े से--

यह एक घर है जोकि एक सीढ़ी नीचे से ऊपर की ओर गई है।

बहुत ही हरियाली है यहां पे कई लोग आते-जाते घूमते फिरते रहते हैं।

सेल का स्टोर है यहां पे कार्ड भी बेचे जा रहे हैं और एक सामने एक टेबल और एक चेयर भी लगा हुआ है।

साथ ही उसके साइड में एक स्टूल भी है और अगल-बगल ढेर सारे सिस्टम के साथ-साथ--

खड़ा है यहां प कई भगवान की प्रतिमा है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं।

एक मॉल इसमें कई वैरायटी के सामान बेचे जा रहे हैं।

ये एक ऑफिस है ऑफिस में एक टेबल एक--

साइड में छोटे भी चार चेयर रखे हुए हैं इस ऑफिस में कोई नहीं है।

ऑफिस के साइड में कॉर्नर में एक मंदिर की फोटो भी रखी हुई है जिसमें भगवान की पीक हैं।

ये एक कॉस्टल का गलियारा है जिसका कलर --

जहां पे बहुत सारे ऑटो खड़े हैं जो कि सवारी यहां पे छोड़ के चले जा रहे हैं।

जो कि देखने में बहुत ही सुनहरा है नौ पे--

यह एक गार्डन जिसमें बहुत ही बड़े-बड़े पेड़ हैं नारियल के--

और एक बहुत ही सुंदर फर्नीचर भी है साथ मैं--

यह एक बीच हैं समुद्र का किनारा बहुत ही मनमोहक लग रहा है।

समुद्र के बगल मैं दो औरते अपने सर पे सामान लेते हुए जा रही हैं।

ये एक ज्वेलरी का शॉप है यहां पे कई वैरायटी तरह के कलर का सेट दिख रहा है।

यहां पे फर्नीचर से रिलेटेड कई सारे सामान बेचे जा रहे हैं जैसे हम--

बहोत से यात्री है अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं।

साथ मैं उसके पास एक छूला भी हैं और चेयर पे दो आदमी बैठे हुए है।

बाकी होल यात्रीगण साइड में खड़े हैं।